यहां पर ये कुत्ता बीमान नजर आ रहा है।

इस तस्वीर के अंदर अह एक गाड़ी धोता हुआ व्यक्ति नजर आ रहा है।

पीछे एक मंदिर की चोटी भी नज़र आ रही है।

यहां पर बहुत सारे पर्दे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

वे उसकी गोद में एक बच्चा दिखाई दे रहा है औरत मोमडन मुस्लिम लगती है।

यह तस्वीर मुझे किसी शादी समारोह की नजर आ रही है।

इस तस्वीर के अंदर अपोलो डायग्नोस्टिक्स का पोस्टर लगा हुआ है।

वह एक रोड भी नजर आ रहा हैं।

यहां पर शटर बंद दिखाई दे रहा है और यहां एक व्यक्ति मेज पर चढ़कर कुछ ठीक कर रहा है।

एक बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

और यहां एक झंडा भी दिखाई दे रहा है।

यहां दो हाथियों की मूर्तियां भी नजर आ रही हैं।

यह तस्वीर एक घर के गेट की दिखाई दे रही है यहां पर काले रंग की पैड़ियां नजर आ रही है।

यह तस्वीर देहाती ठाठ की नजर आ रही है यहां पर बहोत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं।

यहां पर हर कंपनी के प्रोडक्ट्स दिखाए गए हैं।